बॉलों का रंग नीला एवं पीला है।

दिखाए गए दृश्य में एक बड़ा सा घर दिखाया गया है घर का रंग गुलाबी है।

कमरे में बहोत सारे दरवाजे दिख रहे हैं जिनपर बहोत ही अच्छे तरह के कलाकारियां की गई है।

दुकान के बाहर बहोत से लोग भी खड़े हैं लोगों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं।

इंट्रेंस के अंदर बहुत सारे लाइटें भी दिखाई दे रहे हैं एवं बहुत लोग भी नीचे बैठे हुए हैं।

दिखाए गए दृश्य में एक खुला और शांत रोड दिखाया गया है रोड का रंग काला है।

गुफा के जमीन पर बहोत सारी छोटे बड़ी चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं।

प्ले मैदान में बहुत सारे झंडे भी दिखाई दे रहे।

दिखाई गई छवि में एक बड़ा सा इमारत दिखाया गया है इमारत का रंग पीला है।

जिम में बहुत सारी उपकरण भी दिखाई दे रहे हैं एवं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दिखाया गया दृश्य में एक छोटे से दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

कमरे में बहुत सारे सीलिंग फैन भी दिखाई दे रहे हैं सभी फैनो का रंग भूरा है।

दिखाई गई छवि में एक बड़ा सा गेट दिखाया गया है गेट को लोहे धातु के मदद से बनाया गया है।

देखने में भी गेट को आकर्षक बनाया गया है।

सभी कॉस्मेटिक के समान को एक ग्लास स्लैब से में रखा गया है ग्लास स्लैब को दीवालो से जोड़ा गया है।

कॉस्मेटिक से सामान सभी बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के डब्बे में है डब्बों का रंग अलग अलग है।

मजदूरों के आस पास बहुत सारी लकड़ी के ढेर दिखाई दे रहे है एवम् दो बड़े बड़े जे_सी_बी मजदूरों के ठीक पीछे खड़ी है।

इमारत के आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं एवं कुछ ई रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

दिखाए गए छवि में एक छोटे से दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

दुकान के दीवाल को सफेद रंग से रंगा गया है एवं दीवालो को पीले रंग से रंगा गया है।

मकान का रंग नीला है एवं छोटा सा भूरा रंग का गेट भी दिखाई दे रहा है।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

स्त्री अपने हाथों में छाता पड़े हुए हैं।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटा सा कमरा दिखाया गया है।